यह एक हॉस्पिटल लग रहा है यहाँ पे काफी सारे बेड लगे हुए है हर बेड के निचे डस्टबिन्स भी लगी हुई हैं।

यहां पे एक डॉक्टर भी खड़े हैं और एक नर्स भी खड़ी हैं।

वहाँ पे काफी सारी निचे गाड़िया भी लगी हुई हैं।

जिसमे टेबल पर रखी सामने एक नोटबुक भी दिख रही है।

काफी सारे लाल रंग के चेयर भी लगे हुए हैं और बहोत सारे लड़के पढ़ भी रहे हैं।

बॉक्स रखा हुआ है जिसपे पोस्ट-ऑफिस का साइन लगा हुआ है इसके सामने एक--

उसके बगल में एक पिलर पे लगा हुआ बोर्ड भी है जो कुछ दरसा रहा है।

यह एक तालाब है जिसके किनारे पे और अंदर कुछ बतक--

तार टेबल लगा हुआ है अंदर टी_वी भी चल रहा है उसके पीछे बैकग्रॉउंड में फोटो भी लगे हुए हैं जो काफी खूबसूरत हैं।

पौधे भी लगे हुए हैं नीचे वाइट कलर की एक गाड़ी भी खड़ी है और साइड में दो प्लेटें भी रखे हुए हैं।

इसके बाहर बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

यह एक लाल रंग के बर्तन में लगी हुई मिट्टी के बर्तन में एक मोमबत्ती और एक अगरबत्ती जल रही है।

जनरेटर भी लगा हुआ है उसके जस्ट सामने--

यह एक खुबसूरत तो दिखने वाला रेस्टोरेंट है इसके सामने एक--

पार्किंग में एक स्कूटर और साइकिल भी खड़े हैं।

और आगे में कुंढी भी है और आगे तीन बड़े-बड़े पत्थड़ है जिसमें से एक पत्थड़ बड़ा बहुत बड़ा है।

या एक प्लेइंग ग्राउंड लग रहा है जिसमें बच्चे स्लाइड करते हैं उसके पीछे रेलिंग है रेलिंग का कलर पीला है उसके पीछे एक काफी बड़ी नदी है।

यह एक किसी रेस्टेरोंट का बना हुआ डिस है।

लेफ्ट साइड वाले कटोरी में काफी अच्छी चट्टनी रखी हुई है।

यहाँ पे काफी लोग बाहर में लाइन लगा के खड़े हैं जबकि कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं काफी सारे लोग तो पगड़ी भी पहने हैं।

यहाँ पे उस घर के उप के छत पे एक--

उसके नीचे एक स्कूटर और एक काले और उज्ले रंग का गाड़ी है।

यह एक घर है घर के अंदर--

मीरर रखा हुआ है मीरर के बगल में एक अक्टोरियम है ओकरियम के बगम में एक --

जो रेडी हुआ है ही गाड़ी का नंबर वेस्ट बोंगाल का है गाड़ी का चारु दरवाजा खुला हुआ है और पीछे के राइट-साइड वालो दरवाजे के साइड दो आदमी खड़ा है।

इनमें तीन बड़े-बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं।

सीसीटीवी केमरा भी लगा हुआ है रूम में एक ऐसी लगा हुआ है।

और नीचे में काफी सारे आदमी अलग अलग रूम में खड़े हैं जिसमें कुछ सारे आदमी चलके भी आ रहे हैं।

गेट लगा हुआ है जिसमे एक बड़ा सा वाइट रंग का पिकअप भी खड़ा है और काफी सारे --

जिसमे काफी अलग अलग रूम में प्लास्टिक रखी गयी हैं।

ये किसी रूम का पिचर है जिसमे बहोत बड़ा पर्दा लगा हुआ है यहाँ दीवार पे एक गड़ी भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में दो बिल्डिंग है जिसमे--

एक बिल्डिंग के सामने एक टीकेरियं बना हुआ है टीकेरियं में एक पानी चल रहा है और टीकेरियं के बगल में--

कुछ लोग खड़े हो के बात कर रहे हैं।

इधर रेड कलर का बाउंड्री है उसके ऊपर लोहे के सरिये लगे हुए हैं।

यह एक बहोत बड़ा नदी है नदी के किनारे पे दो बोट भी खड़ी है और--

इसमें एक बहुत बड़ा टीवी भी लगा हुआ है यहां पे कुछ ड्रेस पहले --

ये किसी गुटके पूजे का खीचा हुआ तस्वीर है इसमें--

जिसमे लेफ्ट साइड के राईट में काफी सारी बुक रखी हुई है।

यह किसी भजन कार्जी का भजन चल रहा है जहां पे काफी सारे कुर्सी रो में लगे हुए हैं और--

यह किसी शादी का फोटो है जिसमे काफी सारे आदमी टेबल पर बेठ कर खाना खा रहे है और एक--

आदमी जो ब्लू कलर का कुरता पेहन के--